बस द्वारा गया यात्री है। इसका यह मालिक है जो हाथ में मोबाइल फ़ोन लिया है और दो मोबाइल फ़ोन है। एक विवो कम्पनी का है एक एम ई कलर का। यह बस है जो --

ऊपर फैन जो है जो गरम गरम हवा देते हैं। यह शीशा है बहोत अच्छा है। यहाँ पर देखिए जो हरे --

यहाँ देखिए फ़ोटो है। कितना अच्छा इसके नीचें जो फ़्राक सेट है। यह भी बहोत अच्छा है। इसके ऊपर जो कालीन है यह भी अच्छा है।

रस्सी है जो ऊपर से नीचे करने वाली। ऊपर जो लाइट है फ़्रेश बहोत तगड़ी है और यह मोटे रंग का राड है। यह भी अच्छा है। इसके बगल में देखिए जो मो --